जोकि अ एक वाइट कलर का बनियान पहना हुआ है और कुछ लोग कुछ लकड़ी को बांध रहें हैं।

एक औरत ने ब्लू कलर का साड़ी दूसरे औरत ने एक ब्लैक कलर का साड़ी और तीसरे औरत ने एक अ ग्रे कलर का साड़ी पेहना हुआ है।

ये एक पार्क हैं। यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और पार्क --

में कुछ रखा गया है और उसके सामने ही एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने एक ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है और उसके ठीक सामने ही एक बच्ची खड़ी हुई है जिसने एक सफ़ेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

और एक घड़ी भी पहने हुए है और पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है उसमे लॉक कनेक्टेड है और उसने एक कम्बल भी ल-लग रही है।

यहाँ पे दो आदमी काम कर रहे है एक आदमी हाथ में बाल्टी पकड़ी हुई वो निचे कुछ काम कर रहा है और उसने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है और दूसरा आदमी ने खड़ा हुआ है।

औरत ने साड़ी पेहनी हुई है और आदमी ने एक केप और एक काला चश्मा और ह शू पेहना हुआ है।